ये बच्चे लोग हैं। वो लोग भी बैठे हुए हैं। वो लोग भी रंगोली बना रहे हैं। रंगोली बना के देख रहे हैं। डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। मु --

वो लोग भी अभी बनायेंगे रंगोली बनाने के बाद सब बच्चे मिलके बना रहे हैं। इन्हें भी अच्छा लग रहा है। ये अभी लोकेट कर रहे हैं। लोकेट करने के बाद लोकेशन ट्रैक भी अच्छा रहेगा। सबको जानकारी भी इन्हें अच्छी रहेगी।

ये यहाँ पर एक स्कोर्पियो है व्हाइट कलर का इसका रंग काफी अच्छा लगा हुआ है । जो मिनिमम कपनी ने ले रखा है वो वाला लगा हुआ है।

यहाँ पर भी काफी अच्छा है लोग खड़े हुए हैं अच्छा भी लग रहा है देखने में भी बेटर है ज्यादा अच्छा लग रहा है सब कोई खड़े हुए बच्चे लोग बूढ़े लोग बच्चे लड़कियाँ ज्यादा है यहाँ पे।

आ ये जगह काफी अच्छा है यहाँ पे जो है पेंट अभी प्रोपर नहीं हुआ है।